ई कोई मस्जिद है जो मुसलमान --

पानी का आनंद ले रहे हैं और पीछे पहाड़ बना हुआ है। बड़ा खूबसूरत लग रहा है देखने में।

चारों तरफ यहाँ पेड़ है डी.एम. ऑफिसर लग रहा है ये है।

बढ़िया तरीके से करना है जो ये है।

ये टवील्स का कोई शोरूम है। हॉल सेल विक्रेता हैं यहाँ पे । बहोत सारे हॉल सेल के विक्रेता यहाँ पे पड़े हुए हैं।

ये काफी अच्छा है गुरुकुल ज्ञान ट्रस्ट ये ट्रस्ट से ट्रस्ट चलता है।